उसके पीछे दिख रहा है कुछ चीज है और जिसका पत्ता है ग्रीन कलर का है।

इस पिक्चर में हमको दिख रहा है एक बोर्ड है जो बोर्ड में लिखा है एम्.एस. नेहा साम्बियार क्विड कंपनी --

इस पिक्चर को देख रहा है कोई एक नर्सरी है नर्सरी के सामने बहुत टॉप पे कुछ रखा है और कोई के टॉप में--

इस पिक्चर में हमको दिख रहे एक सड़क है सड़क के सामने से एक बिल्डिंग दिख रहा है जो एक बिल्डिंग का कलर है और वाइट कलर का है और एक दिख रहा है जो उम्म दूसरी कलर का हैं।

हमको दिख रहा है एक वॉल है वॉल के सामने एक ग्रील है और ग्रील के पीछे दिख रहा है एक उम्म बड़ा सा पेड़ है --

उसका पीछे देख रहा है एक चीज है घर है उसका पीछे देख रहा है कोई एक पैर है जो ग्रीन कलर का है।

उस पेड़ के पीछे दिख रहा है एक मम्म ब-बस्का कुछ और उस के पीछे देख रहा है एक है उस के साइड पे देख रहा है एक बड़ा-सा वो गाड़ी है और जो घास फुस है बो ग्रीन कलर का है।

इस पिक्चर में हमको दिख रहा है एक गार्डन का पिक्चर है इधर छह-सात बड़े-बड़े पेड़ दिख रहा है।

इसके सामने दिख रहा है जो कलर है वो ग्रीन कलर (Color) का है उसके पीछे ऊपर दिख रहा है जो प --

इस पिक्चर में हमको दिख रहा है दो ग्रिल है जो गेट है उसके पीछे देख रहा है दो अं ट्रंक हैं एक व्हाइट कलर का है।

और ग्रिल कर सामने दो एक बाइक देख रहा है एक बाइक ब्लाक कलर की और इसके सामने जो है वह देख रहा है चमक बड़ीया चमक वाला।